यहां बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है जो हरा भरा है।

टेबुल लगा हुआ है जिसमें तीन ठो स्कैनर रखा हुआ है।

यह बहुत बड़ा माला हैं इसमें बहुत कलर का फूल लगाया हुआ हैं।

बिजली का खंभा भी दिख रहा है जिसपर लाइटिंग किया हुआ है।

यह बहुत बड़ा बेड है उसमें बिछौना बिछाया हुआ है दो तकिया भी दिख रहा है।

यहां सब ट्रॉफी रखा हुआ है यहां बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है।

इसका बिल्डिंग बहुत बड़ा है जो सफेद कलर का है।

ऊपर में दो ए_सी का पंखा भी लगा हुआ है।

साइड मे बहुत सारा पौधा लगा हुआ है जो हरा भरा है।

एक पोस्टर भी पीला कलर का लगा हुआ है।

पीछे में बहुत सारा कोट टंगा हुआ है।

इस दीवाल में प्लस्तर नहीं किया हुआ है बाहर में एक बड़ा सा पत्थर है।

एक आदमी होटल से बाहर आ रहा है।

यहां बहू सारा घांस भी है जो हरा भरा है।

बगल में बहुत बड़ा पेड़ है जो हरा भरा है।

यह बहुत बड़ा हाल है नीचे लाल कलर हरा कलर का बिछाया हुआ है ।

एक अंदर मे बैठने का दिख रहा है।

जलसर पार्क है यहां ऊपर में डिजाइन जैसा किया हुआ है।